इधर दरवाजे के ऊपर लॉक लगा हुआ है चाभियां पड़ी है और अंदर की साइड में पूरे फर्नीचर अंदर अलग अलग डब्बे है।

और बीच में एक लोहे के बाल्टी पड़ी है और एक बाल्टी के ऊपर एक आदमी बैठा है।

स्टूल के ऊपर खड़ा है बैठा है आधा। सर पे टोपी पहने हुई है। ऊपर बर्ड --